छत टाइप ढला रहा है किसी का छत वत ढला रहा होगा।

बस सब आएंगे थोड़ी देर में सब यहां पर रमज़ान मुसलमान लोगों का जो होता है मंदीर --

एक दो आदमी लोग बैठे हुए है अपना कुछ हॉस्पिटल उस्पीटल टाइप लग रहा है या बैंक उंक टाइप तो उसका मैं बता नही सकती आपको बट ये जो भी है।

अअअ महाविधालय हाजी पुर के हैं हाजी पुर के हैं।

बहुत भीड़ है बहुत ही अच्छा पोज है।